यह रास्ता कटा हुआ है जो की आइड साइड झाड़ दिख रहे है और कुछ सूखी घास है मिट्टी का ढ़ेर है।

--है और नारियल के पेड़ है अलग-अलग प्रकार के भी पेड़ है झाड़ फूल है और कुछ घास भी है।

यह एक भगवान की मून म अ भगवान की प्रतिमा हैं मूर्ति है जिसमे फुल अ हार चढ़ाया हुआ हैं।

यह एक मैन्युफैक्चरिंग के आइटम लग रहे है जो के कार्स के व्हील्स में लगे है या फिर किसी और आइटम में जोके एल्युमीनियम के हैं|

ब्लू कलर की टीशर्ट पहनी हुई है एक आदमी नीचे से हथौड़ा मार रहा है और प्लाई पे चढ़ा हुआ है और फर्नीचर --

आ और मिट्टी नजर आ रही है और यह ब्लॉक्स के अ ब्लॉक्स है जो कि बना कर यहाँ पर ढेर में रखे हुए हैं।

बच्चिया है वो खो-खो खेल रही है कुछ गेम खेल रही है इस तरफ भी काफी बच्चे है कुछ खेल रहे है स्कूल यूनिफार्म पहना है।

समुद्र नजर आ रहा है।

एक तरफ एक औरत है जो कि बच्चों को लिए गोद में खड़ी है एयरप्लेन खड़ा हुआ है और फ्लोर नजर आ रहा है।